ये एक केक है जो के मेज़ पर पड़ा हुआ है मेज़ के कपड़े का रंग सफेेद है ।

कुछ गझाड़िया लगी हुई है कुछ पौधे नज़र आ रहे है आसमान साफ है सफेेद है ।

इसके स साथ एक सड़क हैं ।

इसकी छत फूलों से सजाई गई है फर्श जो है वो डब्बियों का बनावा हुआ है जो कि भूरे और काले रंग का है --

सामने दीवार दिखाई गई है जो के सबस रंग की है इसके साथ झाडि़यां है पौधे हैं दीवार --

ऊपर आसी प्लेटे पड़ी हुई है जिनके रंग सफ़ेद है कुछ काले है सामने पर्दे लगे हुए है जो कि सफ़ेद रंग के है छत--

ये एक पारक का मंजर है जिसमें बच्‍चे झूले ले रहे हैं बच्‍चों ने मुकतलिब रंग के कपड़े पहने हुए हैं नीचे एक घा--